लाइटें चालू दिखाई दे रही है।

सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए हे।

और यहां पे ऐसे लोग उसको ठीक किया करते हैं।